चाखू मन्दिर है जो शिमला मे स्थित हैं बहुत ही सुन्दर सा ये भव्य मंदिर है जो--

रहे और वायु जो हमें मिलती रहे जो--

और यहां पर एक सुंदर सा बेडरूम है जिसके ऊपर वाइट कलर की पिलौज़ और वाइट कलर की बेडशीट लगी हुयी है।

ये एक सुंदर सा चर्च है जहां पर लोग--

ये एक सुंदर सा शेरवानी है जो हिन्दू धर्म में दूल्हे को पहनाया जाने वाला पोशाक है।

दुकान बहोत ही सुंदर है जो शिमला में है। और सामने देख सकते है आप गौतम बुद्ध भी है।

एक सुंदर सी शॉप है जहां पर हमें डेली नीड्स की शॉप है यहां पर हमें मैगी बिस्किट और बहोत ही सुंदर सुंदर पानी की बॉटल्स और--

ये एक सुंदर तरह का एक गार्डन नजर आ रहा है जिस पे पिंक कलर का फूल है।

सुंदर सुंदर गमले के ऊपर प्लांट्स है।

काफी सुंदर ये गार्डन नजर आ रहा है इसमें सुंदर सुंदर ग्रास लगे हुए है और--